सारे बोक्स रखे हे ओर दोनों तरफ दोनों तरफ साउंड लगे हुए हे इसे बहुत आवाज आती होगी ओर यहा पे रोड पे कुछ गाड़िया भी लगी हे।

यहाँ पर पहाड़ है ना पहाड़ के उपर से पानी बह रहा है झरने की तरह और पहाड़ों से टकरा के ये पानी एकदम सफेद और खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पर दो - तीन आदमी खड़े है।

और पत्थर हैं ये यहाँ पर मिट्टी हैं छोटे- बड़े पत्थर लगे डले है और यहाँ पेड़ भी लगे है छोटे- छोटे ओर कुछ काफी बड़े घने पेड़ हैंये--

यहाँ पर टेबल रखी हुई है टेबल के ऊपर जो है रखी है जो ब्लैक कलर की है उसमें पीस रखे हुए हैं खाने के--

--और यहाँ पे बाहर भी कुछ लोग खड़े हुए है साइड मे गाड़ी खड़ी हुई है पेड़ पौधे लगे हुए है और भी लोग कुछ बना हुआ है।

खड़े रहेंगे शायद ये आदमी बच्चो को फ्री में बिस्किट बाट रहा है और यहाँ पर काफी सारे घर पेड़ पौधें बने हुए है साईट पर दो लोग खड़े हुए है।